यह सिटी का दृश्य है जो की जो नदी है दोनों साइड ।

जो की उजला और लाल कलर का पेंट किया हुआ है | भारतीय डाँक का बैनर लगा हुआ है |